कुछ पेड़ लगे हुए है जो दिखाई दे रहे है कुछ टीन सेट बने है जो दिख रहे है।

यह मशीन दूसरी मशीन में फंसी हुई है| यहाँ पर कुठिया कुठिया दिखाई दे रही है एक आइल की।

यहा पर एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क किनारे कुछ ऑटो खड़े हुए है जो दिखाई दे रहे है कुछ व्यक्ति महिलायें दिखाई दे रही है।

महिला दिखाई दे रही जो की रेलिंग पर खड़ी हुई है छत पर| यहाँ पर पानी पहाड़ से पानी गिर रहा है वह दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर कुछ पेड़-पौधे लगे हुए है जो दिखाई दे रहे है एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है| यहाँ पर एक दरवाजा लगा हुआ है जो दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ लगे हुए हैं वे दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें गाड़िया खड़ी हुई है दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं दो-दो रिक्शा दिखा ऑटो दिखाई दे रहे हैं दो--

यहा पर एक ग्राउंड दिख रहा है ग्राउंड में एक जानवर दिखाई दे रहा है यहा पर एक चबूतरा बना हुआ है जो दिख रहा है कुछ पेड़ लगे हुए है जो दिखाई दे रहे है एक झोपड़ी बनी हुई है जो दिख रही है।

यहा पर कुछ पेड़ लगे है जो दिख रहे है कुछ पत्ते डले हुए है जो दिखाई दे रहे है।

यहा पर कुछ पेड़-पौधे लगे हुए है जो दिखाई दे रहे है।